और एकरा एती सुंदर सीढ़ियाँ दिखत है पीछे कती बहुत सारा बड़े-बड़े जंगल दिखत है पहाड़ दिखत है आकाश दिखत है और चिड़िया उड़ात है।

गार्डन इ लइका मनी हेला खेले कुदेला जतेह दु गो लइका --